एक बहोत बड़ी सफेद रंग की बिल्डिंग़ भी दिख रही है जिसमें काफी--

किसी म्यूजियम का मालूम हो रहा है। जहां पे--

उसमें एक पनीर का टुकड़ा प्याज टमाटर गाजर भी दिख रहा है।

पीछे दो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी दिखाई--

साइंस कॉमर्स आर्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए--

मंडी का चित्र है जहां पे कीलकी प्यास टमाटर हरी--